बरगद के पेड़ से टहनियां लटकती दिख रही हैं।

खंबे के पास एक बोतल भी रखी दिखाई दे रही है।

सामने दुकान है खाने की।

आगे वाल मिठाई का काउंटर है जिस पे दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां गुरुद्वारे का पाठ पढ़ाया जा रहा है।

नाई की दुकान में एक आदमी हाथ में फोन लेकर खड़ा है।

हवन के ऊपर फल फ्रूट दीये भी रखे हैं।

इसमें मेज है साइड में जिस पर दो लोग बैठे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा चमेली गुलाब नारियल का माला लटका दिखाई दे रहा है।

शॉप के बाहर एक बोरा रखा है अंदर कुछ लोग खाना बनाते दिखाई दे रहे हैं।

बाहर की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पीछे एक तसला रखा दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारे लोहे के सरिया बिछी हुई है।

बाहर की तरफ एक खंभा है बिजली का जिसपर बिजली के तार हैं।

सामने एलमारी है जिस पर लैंप रखे हुए हैं।

साइड में एक स्विच बटन भी रखा दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ बड़े बड़े टॉय भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारी औरतें भवन के पास बैठी हैं।

साइड में बहोत सारे गमले भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी साइड में बैग लेकर खड़ा दिखाई दे रहा है।

आगे कि तरफ प्याज और कुंदरु भी रखा दिखाई दे रहा है।

जमीन पर एक मेज रखी दिखाई दे रही है।

पेड़ पर लाइटे लगी जलती दिखाई दे रही हैं।

ऊपर की तरफ ए_सी लगा दिखाई दे रहा है।

रोड पर कार खड़ी दिखाई दे रही है।